इमारत के पीछे लाल रंग की इमारत भी है उस इमारत में लाल रंग के खंबे गड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक दुकान दिखाई गई है।

दुकान के आगे एक ट्रैक्टर का टायर भी है।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क का सड़क दिखाई गई है उस सड़क पे एक ई रिक्शा एक स्कूटी एक बाइक और एक घंटा घर दिखाया गया है।

इसमे एक नीली और सफेद कलर की इमारत भी दिखाई गई है।

दुकान का बोर्ड लाल रंग का है।

बहुत सारी इमारतों का रंग गुलाबी है।

इस तस्वीर में हमें एक घर दिखाया गया है।

तस्वीर में एक छोटा सा टी_वी भी है।

इस तस्वीर में हमें एक ऐसा यंत्र दिखाया गया है।

उस प्रतिमा के सामने दो छोटे छोटे जानवरों की प्रतिमाएं भी हैं।

घर के दरवाजे पर दो झंडे लगे हुए हैं।